एक लड़की खड़ी है जिसने व्हाइट कलर की फ्रॉक पहन रखी है।

सामने कुछ लोहे का एंगल लगा है उसमें कुछ बाल्टीयाँ टंगी है।

सामने पत्थर रखे हैं कुछ टाइल्स हैं।

यहां पर सामने एक बिल्डिंग है जो ऑरेंज कलर की है।

जिस में येलो कलर के खंभे भी बने हुए हैं।

जिसमें ब्लैक कलर के गेट लगे हुवे हैं।

जिसने ग्रीन कलर की साड़ी पहेन रखी है।

यहां पर बहोत अच्छा कलरफुल मंदिर बना हुआ है।

यहां पर लोहे की सीढ़ियां लगी हैं।

यहां पर लंबी लंबी लोहे की जालियां बनी हुई है।

यहां पर बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हैं छोटे छोटे सब्जियां लगी है।

यहां अंदर कांच का केबिन बना है।

यहां बहुत सारी शक्कर की बोरियां रखी हैं दालें रखी हैं नारियल है।

यहां बहोत बड़ी बिल्डिंग है जिसमे आगे की तरफ कांच से बना हुआ है।

यहां पर बहोत बड़े बड़े साइड में पत्थर रखे हैं।

एक तार की जाली बनी हुई है अन्दर पौधे हैं।

जिसमें एक तरफ पांच शिखर है दूसरी तरफ भी शिखर बने हुए हैं।

यहां सामने व्हाइट कलर की फोर व्हीलर खड़ी है।

गैस चूल्हा रखा है पन्नी में भी कुछ फल रखे हैं।

यहाँ येल्लो कलर का बोर्ड लगा है जिसमें जीवाश्म संग्रहालय लिखा है।